तस्वीर है ये बहोत इसमें जो है नेवले जो हैं --

और मीनार काफी बड़ी है। मीनार पे माइक लगे होते हैं। की आजान या कोई प्रेयर की जो एलान की आवाज होती है वो गाँव तक --